जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा मकान है जहाँ पर इसका इस मकान में उसका नाम भी लिखा हुआ है ।

जैसा के आप देख सकते है रोड के दोनों तरफ बोहत बड़े -बड़े बिजली के खम्बे गड़े हुए है जिनसे बिजली की तारें जाती--

इस फुब्बारे के उस तरफ बोहोत प्यारी लाइट जल रही है और उस तरफ पेड़ भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर हरी घास भी लगी हुई है।

-- रखी हुई हैं ये मिठाइयां एक कांच के रैक में रखी हुई हैं नीचे की साइड कुछ नम--

किन ओप ऊपर की साइड कुछ मिठाई रखी हुई हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गार्डन है जिसमें बोहत ज़्यादा घास लगी हुई है और ऊपर की तरफ एक-एक--